हां और अ नीचे धूप है कहीं छांव है।

जो कि रंग के है दाये तरफ फूल भी लगे हुए है।

ईटों ईटें लगी हुई है मट्टी है घास है कहीं कहीं झाड़ियाँ है।

बाहर फूटबाथ एक बच्ची बैठी हुई है जिसने गुलाबी रंग की इस।

सामने एक आदमी चल के आ रहा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और काले रंग की पैंट पहनी हुई है।

ये एक होटल है जिसके ऊपर उमंग पैलेस लिखा हुआ है।

सामने एक घोड़े का मुजस्मा बनाया हुआ है जोकि काले रंग का है।

ये एक मॉल है जिसके ऊपर एंबिएंस --

ये एक तालाब है जिसके अंदर पौधे लगे हुए हैं पौधों के रंग सब्ज हैं अह गुलाबी हैं।

ये एक बड़ी और ऊंची अमारत है सामने दो खंबे लाइटोंन के नजर आ रहे हैं जो के पीले रंग की हैं।

इसके पीछे बड़े डब्बे पड़े हुए हैं आदमी ने सफेद रंग की शलवार और हल्के गुलाबी रंग की शल्ट पहनी हुई है।

ये एक गैलरी है जिसमे साथ सतून नज़र आ रहे है।

जो के सिमट से बना हुआ है। इसके दाएं तरफ सब्ज रंग के पौधे लगे हुए हैं।

सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है जो कि रंग है उस पर सफ़ेद रंग की लिखाई से लिखा गया है।

सामने एक शीशा है शीशे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

जिसने काले रंग की बगैर बाजुओं की शर्ट पहनी हुई है का।